सामने कई मोटरसाइकिल भी खड़ी है मोटरसाइकिल का रंग सफेद और काला है।

इस मॉल के बीच में लाल कलर की बाउंड्री भी बनी हुई है।

तस्वीर में पहाड़ों के बीच में कुछ में कुछ बना हुआ है।

ये तस्वीर एक आधुनिक इमारत और हरे भरे मैदान की दिखाई दे रही है।

इमारत के सामने एक पक्का रस्ता जा रहा है।

उनके आसपास पक्के चबूतरे जैसे स्थान बने हुए हैं।

इस तस्वीर में एक सफेद गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है सड़क पर बारिश के कारण गीलापन नजर आ रहा है।

चित्र में एक सब्जी और फल की दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान के अंदर कहीं टोकरिया और डिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं एक मटका भी रखा हुआ है।

ये तस्वीर एक सरकारी भवन की दिखाई दे रही है जिसपर गुजराती मे कुछ लिखा हुआ है।

प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में अस्पताल का नाम लिखा हुआ है भवन के बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है।

बैंक के सामने खंबे पे लाइट लगा हुआ है बैंक का कलर पीला है।

इस तस्वीर में एक सड़क भी दिखाई दे रहीं हैं ओ --

आगे पहाड़ों के पास कोहरा छाया हुवा हैं।

इस तस्वीर में बड़े से पहाड़ के नीचे कुछ बना हुआ है मंदिर जैसा।

इसमें एक लोहे का खंबा भी दिख रहा है जोकि बिजली के तारों से लटका हुआ है।

बिजली के खंभे के पीछे पेड़ जैसा भी दिख रहा है।

दोनों और सफेद पर्दों पर सुनहरे रंग के कपड़े सजाए गए हैं।

और कुछ पौधे भी रखें हुए हैं छत पर पंखा सजाया हुआ है।

यह तस्वीर किसी मंदिर का है जिसके आजू बाजू बहोत हरियाली बड़े बड़े पेड़ और घास ल भी हैं।

ऊपर लाल सफेद और गुलाबी फूलो की ल लड़ी लट काई गयी है।

और कार की पार्किंग का सुविधा दिया गया है।

तस्वीर में बहोत सारी कुर्सियाँ रखीं हुई हैं।

पीले गोल्डन वाइट और पर्पल रंग से मंडक सजाया गया है।

साइड में छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

चारों तरफ पौधे लगाए गए हैं और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में दूर सामने एक हरी भरी पहाड़ी भीं नजर आ रहीं हैं।

यह तस्वीर किसी पार्किंग यार्ड या फिर सड़क किनारे की है।

पत्थरों के बीच में से पानी आते हुए दिखाई दे रहा है।

पानी जमा होकर एक झील बनाया हुआ है।

झरने के उस तरफ हरियाली ही है।

एक घर जैसा भी कुछ दिखाई दे रहा है।

साइड में एक लकड़ी की गाड़ी भी रखी हुई है।

यह तस्वीर एक कमरे की दिखाई दे रही है।

कमरे में भुरे रंग के सोफे रखे गएं हैं।

उस तरफ पिंक और पीले रंग के झूले दिखाई दे रहे है।

इसमें एक ब्राऊन कलर का मिट्टी का रस्ता दिखाई दे रहा है।

पेड़ के पास भूरे रंग का कुछ बना हुआ है।

उसके पीछे से तारें गई हुई हैं।